ये सरकारी हॉस्पिटल है जैसे कहना चाहिए इतना अच्छा भी है और यहा पे सब कोई ई फ्री इलाज होता है जो कुछ भी बीमारी हे सब का फ्री इलाज रेहता देख सकते हैकितना अच्छा भी है|

और ये मैंगो फ्रूटी की बोतल को भी बना देता है स्प्रे इसी कारण ये फेमस है। और ये हेयर कट कर रहा बलराम महतो ही जो मौजूद करता है हरतपा से बहुत ही अच्छा हेयर कट कर रहा है इसके कारण इसका चालीस --

हेलो गाइस देख सकते है ये सूर्यमुखी फूल है और यहां पे बहुत ही अच्छा वगैरा वगैरा ग्राम में लगाया गया है स्कूल कॉलेज का --